कुछ लाल लल दिख रहा है और नीचे ज --

सामने एक बडी-सी हवेली दिख रही है जो सफ़ेद कलर की हैऔर ऊपर ज --

ई एगो बस अड्डा ह जहाँ बहुत सारा बस लागल बा और टेम्पू भी काला रंग के लागल बा --

एक पेड़ की डगार दिख रही है।